यहाँ मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर क्रॉस का निशान है चर्च है ईशुमशी जी की मूर्ति है एक छोटी सी आस पास पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है। और--